दिख रहा है विद्यालय का गेट दिख रहा है विद्यालय का एक बैनर लगा हुआ है बादल दिख रहे है बादल मे कलर --